यह तस्वीर किसी सड़क का नजर आ रहा है जहां रोड किनारे कुछ सामान बिकते हुए नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी पूजा-पाठ का नजर आ रहा है।

इस तस्वीर को रात के समय में लिया गया है।

मॉल के आगे कैंटाबिल लिखा गया है।

इस तस्वीर को रात के समय में लिया गया है।

यह तस्वीर किसी होटल की नजर आ रही है।

पीछे की और एक घर भी नजर आ ड़हा है।

पीछे की ओर काफी सारे अलमारियों के ऊपर किताबों को सजा करके रखा गया है।

हमें एक काउंटर टेबल भी दिखाई दे रहा है और दो चेयर भी नजर आ रही है।

पीछे की ओर एक बड़ी इमारत नजर आ रही है।

एक बड़ा सा मैदान भी नजर आ रहा है।

इस दुकान में बहुत सारे सामान भी नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर किसी टुकटुक के दुकान का नजर आ रहा है।

पीछे की ओर बैलूनों की मदद से इस दुकान को सजाया गया है।

सामने की ओर एक खिड़की भी नजर आ रही है।

यह रेस्टोरेंट बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है।

रेस्टोरेंट के अंदर काफी सारे टेबलों और काफी सारे चेयर को लगाया गया है।

पीछे की ओर हरे भरे पेड़ नजर आ रहे हैं और आस पास के और चट्टान भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर को दिन के समय लिया गया है।

यह तस्वीर किसी बेकरी दुकान का नजर आ रहा है।

आसपास काफी सारे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर को किसी दूसरे कैमरा से लिया गया है।